दिखाई गई छवि में एक छोटे से दुकान का दृश्य दिखाया गया है दुकान का नाम मां चंचला ओ आर जी ड्राई फ्रूट्स है।

दिखाये गये दृश्य में एक छोटा सा दुकान दिखायी दे रहा है दुकान के काउंटर पर एक पानी की बोतल रखी गयी है जोकि डब्बे में बंद है काउंटर का रंग नीला है।

में बहुत सारे खाद्य पदार्थ एवं डिटर्जेंट साबुन इत्यादि भरे हुए हैं।

दिखाए गए दृश्य में एक --

हॉल की फर्श को टाइल्सो से ढका गया है।

मकान के पास एक छोटा सा दो पहिया वाहन गाड़ी भी खड़ा है एवं एक लाल रंग की कुर्सी भी है।

दिखाए गए छवि में खुला सा मैदान दिखाया गया है मैदान बालू से ढका गया है एवं कुछ दूरी पर बालू के बड़े बड़े टीले भी दिखाई दे रहे हैं।

हिरन का रंग भूरा है और सभी हिरन घास चार रहे हैं।

दिखाए गए छवि में एक छोटा सा स्टेज दिखाया गया है।

रेलवे स्टेशन प एक छोटा सा बेंच भी दिखाई दे रहा है एवं एक बड़ी सी नीले रंग की रेलगाड़ी भी दिखाई दे रही है।